इस इमेज में मुझे बी एल यू एस एच आई एन जी टी औ एन बोर्ड लगा हूआ दिखाई दे रहा है दीवार पे ऊपर एक फोटो लगी हुई है एक अ मीटर लगा हुआ है।

जो छोटा सा है ब्लैक और व्हाइट कलर का है और बहुत घास दिखाई दे रही --

इस इमेज में मुझे एक स्टेज दिखाई दे रहा है स्टेज पे व्हाइट कलर का पर्दा लगा हुआ है ऑरेंज - ऑरेंज और तिरंगा कलर के फुग्गे लगे हुए दिखाई दे रहें हैं।

उधर गेट पे एक आदमी और एक औरत सी खड़ी हुई दिखाई दे रही है इधर के गेट पे एक और आदमी और एक औरत दिखाई दे रहे है और दो पुलिस वाले दिखाई दे रहे है ग्राउन्ड में खड़े हुए।

इस इमेज मे मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा है हॉल मे बहुत सारी व्हाइट कलर की कुर्सियां डली हुई है सामने स्टेज बनी हुई है।

इस इमेज मे मुझे एक पार्क दिखाई दे रहा है पार्क मे गोल-गोल से बना हुआ है जिसमे पानी भरा हुआ है और एक फुवारा सा लगा हुआ है।

खड़ी हुई है और रोड पर एक वाइट कलर की कार जा रही है एक ऑरेंज से कलर की कार जाती हुई दिखाई दे रही है एक डंपर आते हुए दिखाई दे रहा है और खंभा दिखाई दे रहा है और बहोत सारे तार लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और सामने भी एक खम्बा है उसमें बहुत सारे तार लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में मुझे एक ग्राउंड बना हुआ दिखाई दे रहा है एक जी एक जिप दिखाई दे रही है।